बहुत बड़ी लेक है जिसमें सामने एक आइलैंड है जिसमें बहुत सारी ट्रीज है यहाँ अऽ पास मे पाँच बोअट्स हैं दूर तीन बोअट्स है स्काई बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है।

यहाँ एक अंकल भी दिख रहे है दूर से बहुत से आइलैंडस भी नज़र आ रहे है।